और ये समुन्द्र में और नदियाँ तालाबों में पाई जाती है।

इस से यात्री-गण इस पार से उस पार आते-जाते हैं।

ये झील है। यहाँ पे लोग घुमने आते है। और इसमें बहुत जीव जन्तु पाले जाते हैं।

यह एक मोहल्ला है। एक गाँव है एक है जो भी है। यहाँ पे लोग अपना रहते है और अपना खाना पीना --